और यहाँ पे लाइटिंग भी दिखाई दे रही है एंड यहाँ पे पेड़ भी है एंड यहाँ पे लोग है जिन्होंने कलरफुल कपड़े पहने हुए है एंड छो --

एंड यहाँ पे दो औरत भी खडी हुई है एंड यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे भी बैठे हुए है एंड यहाँ पे प्लांट्स भी लगा हुआ है एंड यहाँ पे चेयर भी रखी हुई हैं।

और कुछ ग्राउंड्स भी नज़र आ रहा है जहा पे ये ब्राउन कलर का दिख रहा हैंऔर पीछे साइड बिल्डिंग और आंगे -आंगे थोड़े बिल्डिंग दिख रही है छोटी-छोटी और बहुत सारा ये शाम टाइम के पीक --

और यहाँ पे दोपहर टाइम की पीक है और यहाँ पे कुछ समान भी लिखा हुआ है बिल्डिंग भी है और खंबा भी लगा हुआ है जहाँ लाइट जलती है और यहाँ पे रेड --

क्लासेस दिख रही है यंहा पे क्लाससेस लगती है और यंहा पर शटर लगी हुई है और यहां पे कुछ लिखा हुआ है।